यहाँ पे आसपास बहोत से पेड़ पौधे हैं| कार काली व सफेद रंग कि भी हैं।

पास में टी.वी. लगी है। ऊपर झूमर लगा हुआ है। यहां पे एक शेफ रखी हुई है। पास में एक पर्दा पड़ा है जो काले रंग का है। ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं।

यहाँ पे हरी सब्जियाँ भी हैं पीछे पल्ली पड़ी हुई है यहाँ पे एक दरी बिछाई गयी है जो कि भूरे रंग की है।

यह एक मशीन है जो लोहे की बनी हुई है और काले रंग की है| यहाँ पे (पर) एक दरवाज़ा भी है जो बंद पड़ा है।

यहाँ पे मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं एक खिलौना गिटार पकडे हुए है एक तबला बजा रहा है।